जिसमें पौधे अच्छे से लगाए गए हैं।

घर के पीछे घने जंगल अ हैं।

सभी टेबल पर पानी और गिलास रखा हुआ है।

ये मुझे एक नदी लग रहा है जिसमें दो बत्तख तैर रहे हैं।

गेट के दूसरे साइड बनाना का गछिया है।

ये एक जगह है जिसमें पांच छोटे घर दिख रहे हैं उनके आगे पांच छे पौधे लगे हुए हैं।